यहाँ पे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लू हैं यहाँ पे एक मशीन भी दिखाई दे रही हैं प्रेस भी दिखाई दे रही है स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है और एक रस्सी भी दिखाई दे रही है।

फिर परदे भी दिखाई दे और एक गेट भी दे रहा हे नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

एक माँ दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल का कलर वाईट है ग्रीन है बहोत सारी लाइट ऐ भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे सोफे भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ चेयर भी दिखाई दे रहे हैं।